चित्र में सामने एक रोड बनी हैं रोड में एक बस खड़ी हैं जो की सफेद रंग की है साथ ही उसके सामने कई सारे दुकानें बनी हुई हैं जोकि हरे और नीले रंग की है।